नीचे पानी पड़ा है एक वॉटरपार्क बना हुआ है हरी -हरी ग्रास है ऊपर खुला आसमान है।

बहुत बड़ा सा घना सा पेड़ है उसके सहारे दूकानें बनी है दुकानों पर बाहर बहुत से बैनर लगे हुए है आगे स्कूटी खड़ी है बाइक खड़ी है।

एक आदमी बुढ़िया के बाल बेच रहा है मंदिर का गेट है।

वैसे कुछ लोग अंदर जा रहे है कुछ बाहर आ रहे है भीड़ लगी हुई है और बहुत सी लाइटे लगी हुई है।